और यहां पे कुछ लोग भी है।

देखने के लिए ब बहोत अच्छा है। ओवरआल यह सीन है अच्छी है।

यहा पे मुझे घने जंगल में एक दो बच्चे नजर आ रही हैं।

यहां पे एक लोग बैठा हुआ है। इंतज़ार कर रहा है खाने के लिए--